उसके बगल में एक ब्राउन कलर का बॉक्स लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक ऑरेंज कलर का फूड वैन नजर आ रहा है जिसमें ग्लास लगा हुआ है डिजाइन दार ग्लास लगा हुआ है।

साइड में एक रेड कलर का ऑटो नजर आ रहा--

एक आंटी यहां पे ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यहां पे हमे स कुछ साड़ियां नजर आ रही हैं।

यहां पे एक लुना लगा हुआ है।

यहां पे थोड़े थोड़े घास नजर आ रहे हैं साइड में पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हम एक बिल्डिंग नजर आ रहा जोकि रेड कलर का व्हाइट कलर का और ब्राउन कलर का मिक्सेस है ।

यहां पे एक रेड कलर से लिखा हुआ है शहीद स्मारक रांची ।

फोटो एक शोरूम का है जहां पर बहुत सारे बलूंस लगे हुए हैं ऑरेंज वाइट ग्रीन ।

यहां पे तीन गाड़ियां लगी हुई हैं।

यहां एक कैसेट ए_सी लगा हुआ है एक फैन लगा हुआ है।

एक चेयर है जो कि रेड कलर का है एक डस्टबिन है ग्रीन कलर का।

ग्रीन कलर का पानी का पाइप है।

बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे ग्रीन कलर का बैठने का बनाया हुआ है।

चार पांच कैसेट ए_सी भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है साइड में।

यहीं पे एक पेड़ नजर आ रहा है दो पेड़ हैं।

ये नांव लकड़ी का है ब्लू कलर का इसका पटरा है।

उसके बगल में एक और है जिसने ऑरेंज कलर सडों गंजी पहना हुआ है।

यहां पे रेड कलर का कुछ बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे हमें ढेर सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह फोटो एक वेडिंग रिसेप्शन का है जहां पर एक चेयर रखा हुआ है रेड ओर येलो कलर का चेयर कवर लगा हुआ है।

यहां पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है रेड और ब्लू कलर के बैकग्राउंड में येलो कलर से लिखा हुआ है डेलिमार्केट थाना रांची।

कलरफुल साड़ियां रखे हुए हैं ग्रीन कलर का है येलो कलर का है मेहरून कलर का है रेड कलर का है पिंक कलर का है।